यह तस्वीर एक रेलवे स्टेशन पर स्थित सुधा पार्लर की है।

पार्लर पर दो लोग खड़े होकर कुछ खरीदते हुए नजर आ रहे है।

के पास कुछ लाल रंग के डिब्बे और बोर्ड डिकाए हुए --

पीछे रेलवे प्लेटफार्म और पटरियां नजर आ रही --

बच्चे बेंच पर बैठकर अपनी कॉपियों मे पढ़ाई कर रहे --

अध्यापिका हरी साड़ी में खड़ी होकर बच्चों पर ध्यान दे रही --

कक्षा की दिवारें ऊपर से सफेद और नीचे से लाल रंग की है।

इस तस्वीर में नदी या झील का किनारा दिखाई दे रहा है।

पीछे तीन महिलाएं पानी में खड़ी होकर नजारा देख रही है।

दूर किनारे पर हरी भरी पहाड़ियां दिखाई दे रही --

एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देख रहा है।

ऊपर एक व्यक्ति का जूत्ता दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर कई लोग खड़े हैं।

ऊपरी मंजिल में किताब और स्टेशनरी का स्टॉक रखा हुआ नजर आ रहा --

सामने कई मोटरसाइकिल खड़ी है।

बाईं ओर काले जामुन और पीले केले दिखाई दे रहे हैं।

फलों को रंग बिरंगे कागज के टुकड़ों पर सजाकर आकर्षक तरीके से रखा --

ट्रक के ऊपर एक आदमी है और एक आदमी चढ़ रहा है।

बहुत सारी बोड़ियां रखी हुई है।

कुछ येलो कलर की है और कुछ व्हाइट कलर की है।

यह तस्वीर एक व्यवसायिक इमारत की है।

नीचे की मंजिल पर तीन दुकानें ऑफिस दिखाई दे रही है बंधन बैंक कोटक बैंक स्वनिस --

कॉलेज के सामने जूतों चप्पलों की दुकानें लगी है।

यह जगह किसी फार्म या पशुपालन की लग रही है।

इस तस्वीर में सरक के किनारे एक सुंदर पीले रंग का प्रवेश द्वार दिखाई दे--

बाईं ओर दुकानें में लोग खरीदारी कर रहे हैं।

एक व्यक्ति काउंटर के पास खड़े होकर कपड़ा पकड़े हुए है।

पीछे दीवार पर ड्राई क्लीन का साइन बोर्ड लगा हुआ है।

पीछे एक व्यक्ति किसी काम में व्यस्त दिखाई दे रहा --

ये तस्वीर एक किराना थोक दुकान की है।

दुकान के बाहर प्याज आलू लहसुन के बोरे रखें हुए हैं।

दो आदमी दुकान में बैठे और खड़े होकर काम कर रहे--

दुकान के ऊपर लाल रंग का बोड लगा हुआ--

इस तस्वीर में एक पुरानी इमारत का अंदरुनी हिस्सा दिखाई दे रहा --

दीवारें ऊपर से हल्के पीले नीचे लाल रंग से रंगी हुई है।

यहां कुरकुरे बिस्किट चिप्स फेविकोल पर्स फेस का सामान सारा कुछ है।

एक आदमी खड़ा है वाइट शर्ट में।

यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मछली रखी हुई है।

दो तीन बाइक खड़े हैं बाइक पे आदमी सब बैठा हुआ है।

बगल में एक घर है हरा कलर का साइड में दो पुल है और बगल में पेड़ पौधे हे।

और एक पहा पत्थर का कुछ पहाड़ जैसा बना हुआ है और छोटे छोटे पौधे है पेड़ पौधे।

इस तस्वीर में हाजीपुर जंक्शन लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

घर में एक बड़ा सा पुल है।

एक आदमी बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में एक ब्लैक कलर का ड्रोल है।

दिवाल आसमानी कलर का है ऊपर में ऊपर में पांच लाइट लगी हुई है।

में एक बड़ी सी बोट खड़ी हुई है।

बोट का कलर आसमानी और ब्लैक है।

साइड में दो आदमी एक औरत खड़ी हुई खड़ी है जिसके हाथ में ग्रीन कलर का प्लास्टिक है।

और गेट है ब्लू कलर का।

साइड में एक बहुत बड़ा सा पेड़ है हरा कलर का और आसमान नीला हुआ है।

सीढ़ियों पर लाल कॉर्बेट बिछाया गया है।

दरवाजे पर गेंदा और सफेद फूलों की झालरे टांगी गई है।

इस तस्वीर में एक घर है बड़ा सा --

पेड़ है बड़े बड़े आसमान नीला है।

भीड़ में एक बड़ा सा रोड है जिसपे गाड़ी रिक्शा बाइक सब जा रही है।

बगल मे बहोत सारी दुकाने हैं अगल बगल में --

इस तस्वीर में एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग है जिसका कलर व्हाइट है।

नीचे टाइल्स लगा हुआ है ब्राउन कलर का।

ये तस्वीरें जिम के अंदर ली गई है।

पीछे अलग अलग जिम मशीनें और व्यायाम उपकरण नजर आ रहे हैं।

जिनका फर्श लाल और काले रंग के मेट से ढका हुआ है।

तस्वीर में व्यक्ति हल्की गुलाबी रंग की टी-शर्ट पहने हुए है।

यह तस्वीर खुले स्थान में योग सत्र की है।

सभी लोग सामान मुद्रा में बैठे हैं।

दुकान के ऊपर पड़े साइन बोर्ड पर दूध और डेयरी की तस्वीरे लगी--

दुकान के सामने दो लोग खड़े हैं।

बगल में मोटर साइकिल स्कूटी खड़ी है।

यहां पर तरह तरह के मसाले और इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट टंगे हुए हैं।

दाईं ओर मीट मछली और सांबर मसाला र पैकेट टंगे --

यह तस्वीर एक बड़े कोचिंग संस्थान की इमारत की है।

ईमारत के सामने बांस का मचान लगाया गया जीस पर काम हो रहा है।

सड़क पर एक व्यक्ति ग्रे टी शर्ट मे दिखाई दे रहा --

इस तस्वीर में शादी का एक समारोह दिख रहा है।

एक महिला हरे रंग की साड़ी पहनकर किसी को आशीर्वाद देती नजर आ रही --

सामने कई लोग इस पल को देख रहे--

सामने सड़क पर दो मोटरसाइकिल खड़ी है।

कुछ येल्लो कलर के फूल है कुछ रेड और कुछ ऑरेंज कलर के --

बहुत सारे आदमी हैं बगल में।

ये तस्वीर मछली मार्केट का है।

आदमी सब बेच रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा नदी है।

जिसमें एक बोट है आसमानी कलर का --

नदी के साइड एक पा पत्थर है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ है।

जोकि अपने बाल में चार छोटी की हुई है।

रेड क्लिप लगाई हुई है चारों साइड से--

वहां एक कुर्सी रखा हुआ है।

और चारो साइड खेत ही खेत है।

इस तस्वीर में तीन आदमी काम कर रहे हैं।

एक के हाथ में कुल्हाड़ी है।

बगल मे मिट्टी है घर है।

तस्वीर में चार लड़कियां नृत्य कर रहीं हैं।

चारो लड़कियां साड़ी पहनी हुई है।

साड़ी का कलर रेड ब्लू येलो में हैं।

इस तस्वीर में एक सैलून का मेकअप एरिया दिख रहा है।

सामने बड़े शीशे के चारों ओर गोल बल्ब लगे है।

कुछ लोग अपने समान के साथ बस के पास खड़े है।

वह गहरे गुलाबी रंग की शर्ट और नीली जींस पहने है।

उसके पीछे साफ पानी से भरी नहर या नदी दिखाई दे रही --

एक पर डार्क चॉकलेट कराची की कोटिंग की गई है।

तस्वीर में दफ्तर जैसा माहौल दिखाई दे रहा--

यह लकड़ी के पार्टीशन वाले काउंटर है।

दीवार पर एक गोल घड़ी लगी है।

साइड में कुछ लोग कुर्सियों पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं।

ऊपर कांच की अलमारियां पंखा नजर आ रही --

यह तस्वीर एक फॉर्म हाउस का है जहां पर बहोत सारे मुर्गे हैं।

सारे मुर्गे व्हाइट कलर के है।

और उस साइड ब्ल्यू कलर का पंडाल है।

ऊपर बहुत सारी लाइट जल रही --

इस तस्वीर में एक बड़ा सा नदी है।

दो लड़का खड़ा है एक लड़का ग्रीन टी शर्ट पहने हैं और एक ब्लैक टी शर्ट ।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान है।

कुछ बकरियां व्हाइट कलर की है और कुछ ब्राउन कलर की।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा चर्च है।

चर्च के आगे बहोत सारे लड़के लड़कियाँ खड़े हैं और प्रेयर कर रहें --

एक लड़का हाथ में डंडा लेके खड़ा है और व्हाइट यलो कलर का कपड़ा पहने हुए है।

एक लड़की पिंक टी शर्ट और रेड पजामा में योगा कर रही है।

साइड में बड़ा सा मिरर है।

यह तस्वीर एक इयारपोर्ट का है।

यहां पर एक एयरोप्लेन लगी हुई है बड़ी सी जिस पर इंडिगो लिखा हुआ है।

बगल में एक लेडिज है जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा है।

घर के आगे गेट है जिसमें ताला लगा हुआ है।